दीवार का रंग सफेद कलर का है और सीलिंग के ऊपर एक पंखा भी है।

पिक्चर के अंदर मुझे बहोत सारा चेयर्स और टेबल दिख रहा है।

एक बस का रंग येलो है और एक बस का रंग सफेद है।

ग्राउंड के उसे पार पर काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है।

बाइक के कोने कुछ इंसान है बात की रहे हैं एक दूसरे से।

साइकिल के कोने में एक ऊंचा सा बिल्डिंग भी है।

ये टीना से बना हुआ घर के सामने एक येलो कलर का बस और एक येलो कलर का वैन भी दिख रहा है।

यह पिक्चर में मुझे बहुत सारा मछलियां दिख रहा है।

कुएं के सामने कपड़ा भी सुखाकर रखा गया है।

यह पिक्चर में मुझे दो औरतें दिख रहा है जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं।

यह पिक्चर में मुझे बड़ा सा नदी दिख रहा है।

इस रूम के अंदर कुछ सोफा भी दिख रहा है सोफा के ऊपर एक लाल कलर का कुशन भी है।

बीच में कुछ इंसान बैठा हुआ है स्नो के ऊपर।

एक सॉस का बॉटल भी रखा गया है टेबल के ऊपर।

के ऊपर बहुत सारे इंसान बैठा हुआ है।

तीन बकेट भी एक दूसरे रखा गया है।

यह पिक्चर का नजारा काफी खूबसूरत है।

टेंपल के थोड़े से कोने में बहोत सारे पेड़ भी है।

यह इंसान के ऊपर पर एक बड़ा सा घंटी भी है।